यहाँ शिव जी की पूजा होती है। यह मंदिर बहुत ही पुराना है और बहुत बड़ी है। इस मंदिर में सभी भक्तगण पूजा करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में सो --

य ये तालाब है ये तालाब बहुत बड़ी है यह तलाब में--

यह काफी सारी झाडियां लगी हुई है ।

और काफी अच्छी-अच्छी कप --

बहुत अच्छा दिखाई दे रहा --